यह फोटो जो दिखाई दे रहा है.

इसमें एक एम_ए सुपरमार्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है.

जहाँ नीचे की ओर गली में कुछ युवक चल रहे हैं.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

जहाँ एक लड़का बैठकर अपना बीयर्ड बनवा रहा है.

यह किसी जिम के अंदर का तस्वीर है.

बेंच के ऊपर बारबेल रखा हुआ है जिसमे प्लेट लगी हुई है.

एक पेड़ है सामने की ओर सीडी है.

जहाँ पीछे में कुछ जुलरी लगे हुए हैं.

ऊपर की ओर बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं ए_सी भी लगा हुआ है ।

जहाँ गमला में बहुत सारा पेड़-पौधा लगा हुआ है।

यह फोटो किसी कारपेंटर की दुकान की है.

एक व्यक्ति लकड़ी को चीड़ रहा है मशीन लगी हुई है.

एक बच्चा ऊपर से बैठ कर देख रहा है.

दुकानें बंद है एक ठेला लगा हुआ है.

एक बिजली का खम्बा है जिस पे स्ट्रीटलाइट है.

जहां सामने की ओर दो रनिंग मशीन लगे हुए हैं.

जो प्रेजेंटेशन देख रही है और कुछ--

जहां से एक काली कार गुजर रही है.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

और मसाला सीमेंट का डाला जा रहा है।

ऊपर के साइड में बहुत सारे बल्ब लटकाए हुए हैं।

ये फोटो जो दिखाई दे रहा है किसी पार्क का है।

नह लाल गमला में भी कुछ फूल लगाया गया है।

स्टेज के बगल में बहुत सारे स्पीकर रखा हुआ है.

एक व्यक्ति कंधे पर गमछी लेकर बैठा है ।

को वन विभाग द्वारा पिंजे में लगा दिया गया है।

कुछ लोग स्टेज जैसे पे चढ़े हुए हैं ।

एक टेबल है एक प्लास्टिक की कुर्सी है।

यह किसी ऑफिस के बाहर का फोटो है।

यह फोटो रोड के साइड से लिया गया है जहां बीच में डिवाइडर है।

अअह मेज लगा हुआ है जिसके चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई है कुर्सियां बांस कील है ।

यह एक सैलून का फोटो है जिसमें एक लड़का--

फेस मास्क लगाकर फोन में मिरर सेल्फी लेने का प्रयास कर रहा है ।

ऊपर की ओर झूमर बना हुआ है जिसमें लाइट लगा हुआ है।

एक टेबल पे एक लड़का बैठा हुआ है ।

बैलून से डेकोरेशन किया गया है।

यह तस्वीर जो दिखाई दे रही है यह किसी ऑफिस या स्कूल के गेट का है ।

जहाँ मॉल की सीढ़ियां दिखाई पड़ रही हैं नीचे की ओर हॉल है.

यह फोटो जो दिखाई दे रहा है यह भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है.

इसमें दो-तीन मशीन दिखाई दे रही है.

एक रास्ता जैसा बना हुआ है जिसके दोनों साइड में पेड़-पौधे लगे हुए हैं.

ग ग्राउंड में छोटे-छोटे घास जमा हुआ है.

अअह दो लोग काउंटर के उस साइड खड़े हैं.

बहोत सारे टेबल और चेयर अरेंज किए गए हैं.

और कोई भी आदमी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है लोहे का ग्रिल लगा हुआ है.

यह फोटो जो दिखाई पड़ रहा है यह कार के शोरूम का है या सर्विस सेंटर का भी हो सकता है।

जिसमें दो लोग कार को देख रहे हैं.

कार को मशीन से उठाए हुए हैं.

उसके बाजू में एक और कार खुला हुआ है.

ये फोटो जो दिखाई दे रहा है ये किसी--

अह सैलून का है अंदर की ओर एक युवक बैठा हुआ है एक व्यक्ति पीला टी शर्ट पहनकर काउंटर पे खड़ा है.

हरियाली है लंबे-लंबे पेड़-पौधे हैं.

ग्राउंड में गोल-गोल टेबल लगा हुआ है जिसके चारों तरफ कुर्सियां सजाई गई है.

यह फोटो किसी मार्केट का है.

यह फ़ोटो जो दिखाई दे रहा है यह किसी ग्राउंड का है अ क्रिकेट स्टेडियम का है ये पिच का फोटो है जिस पे तीन विकेट गाड़े हुए हैं।

के चारों तरफ हरे-हरे मैदान है.

यह फोटो जो दिखाई दे रहा है इस पे एक वाइट कलर की टोयोटा कार का पीछे का हिस्सा दिख रहा है।

एक और ऑटो के पीछे का हिस्सा दिख रहा है बीच में डिवाइडर है.

इसमें बहुत सारे लोग हैं एक युवक आई कार्ड बन के जा रहा है.

कुछ फूल खिले हुए हैं लाल रंग का कारपेट भी बिछा हुआ है.

जहाँ बहुत सारे लोग जमीन पे बैठे हुए हैं.

कुछ लोग इसमें दिखाई पड़ रहे हैं जो सर को कवर किए हुए हैं.

हाँ और इस पे बहोत सारी लाइट लगे हुए हैं.

जहाँ रेड कलर का-- अअ

एक पौधा है दो-तीन लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं.

एक बाइक पार्क किया हुआ है उसके शेडो रोड पे आ रही है.

एगो करिया आदमी है एगो उसके पीछे काला आदमी है चश्मा पहने हुए।

अअअ कुछ बर्तन भी यहाँ नीचे अलमारी में रखे हुए हैं.

यह तस्वीर किसी हॉस्पिटल के पास का है.

और बाल बगल में लाल गमले में कुछ पौधे लगाए हुए हैं.